बी एस_एन_एल लिखा हुआ दोनों दीवाल पे दिख रहे हैं पीले कलर का।

और यहां पे लाल कलर की एक गोनी दिख रही है मिर्ची में छोटे छोटे कुछ और भी दिख रहे हैं।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

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे हैं।

बहोत सारे नल दिख रहे हैं और एक लाइट चालू दिख रहा है।

सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है और ग्रील माढ़ा हुआ ब्लैक कलर का दिख रहा है।

इस पिक्चर में चार व्यक्ति दिख रहे हैं।

जिसमें से ब्लू शर्ट वाले ने पेपर रखा है कुछ अपने पास।

बालकनी में ग्रिल लगा हुआ है काला कलर का टी_वी के डिश लगे हुए हैं।

टावर भी दिखाई दे रहा है ये हमें और यहां पे पौधे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक घोड़ा छाप का तेल दिख रहा है और भी बहोत सारे तेल दिख रहे सारे कंपनी अलग अलग है।

व्हाइट पीला लाल कलर का घ दिख रहा है।

यहां से यहां पे पहाड़ के ऊपर से झरना गिर रहा है बहोत सारे व्यक्ति उसे देख रहे हैं।

एक व्यक्ति पानी के नीचे ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है।

और कुछ अभी पिलर खड़े दिख रहे हैं।

और यहां पे एक बम्बू भी दिख रहा है साइड में एक पौधा लगा हुआ दिख रहा है।

और यहां पे एक कटा हुआ दो पेड़ दिख रहा है एक लंबा सा पेड़ दिख रहा है हरा भरा।

यहां पे पाइप लाइन के बहोत सारे पाइप भी दिख रहे हैं।

सूखे हुए पेड़ भी बोहोत सारे दिख रहे हैं हरे भरे भी पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे ब्लू कलर का टी-शर्ट एक आदमी खड़ा है और यहां पे खाने के पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

गुलाबी कलर के यहां पे बहोत सारे फूल दिख रहे हैं व्हाइट कलर के भी बहोत सारे फूल दिख रहे हैं।

और कला काले कलर का बैग पहना हुआ दिख रहा है और एक दान पेटी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे पानी जाने के लिए दो रास्ते बने हुए दिख रहे हैं।

और एक महिला एक पुरुष आते हुए दिख रहे हैं महिला ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई भी दिख रही है।

महिला पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई दिख रही है पुरुष गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है।

व्यक्ति के हाथ में एक घड़ी दिख रहा है काला कलर का।

एक आदमी का फोटो है जिसमें उसका फेस नहीं दिख रहा है।

एक टूटी फूटी पिच भी दिख रही है क्रिकेट के लिए।

यहां पे बहोत सारे पौधे भी दिख रहे है।

बहोत सारे झूले दिख रहे हैं एक पीला कलर का एक हरे कलर का भी झूला दिख रहा है।

जोकि हरे कलर का टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है और यहां पे काले कलर की गेट दिख रही है और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है उसपे नाइन लिखा हुआ दिख रहा--

और उसके ऊपर बहोत सारे वायर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रिज के ऊपर।

और यहां पे बहोत सारे पानी गिर रहे हैं झरना के जैसा और यहां पे नीचे पानी ज्यादा दिख रहा है और यहां पे सूखे हुए ईटे भी दिख रहे हैं।

और थोड़ा बोहोत घास भी दिख रहा है। ऊपर एक पेड़ की पत्तियां दिख रही है। एक टावर दिख रहा है।